उसके बाहर काफी सारे दो पहिया वाहन खड़े हे बाइक --

और बरसात का पानी दिखाई दे रहा है दीवालो --

के बहार हम कुछ लोगों को देख सकते हैं ।

ये यहाँ हम नीचे हम कप केक और पेस्ट्री को भी रखा हुआ देख सकते है।

इस तस्वीर में हमें एक लाइब्रेरी दिख --

इसके साथ एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो अपनी तस्वीर खीचवा रहा है।

पीछे शादी के में काफी सुन्दर सजावट --

उगी हुई है और उसके ऊपर चलने के लिए --

देख सकते है जिसका पानी काफी साफ लग रहा हैं ।

इस तस्वीर में हमें एक पॉल्ट्री --

हाथ से घुमाने वाली गाड़िया हे और आस-पास हम काफी सारे लोगो को--

और अलग अलग चीजो में इस्तमाल होने वाले बर्तनों को रखा हुआ देख सकते हैं।

काँच लगे हुए है और इसपे एल सीलिंग फैन भी लगा हुआ हैं ।

इस तस्वीर में हमें कुछ फंक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर हम काफी--

नीचे एक शटर है जो कथाई रंग की है उसमें ताला लगा हुआ हैं ।

लोहै की किल से डीजाइन बनाई गई है और उसमे काफी सुंदर रिफ्लेक्स्न जेसा पड़ रहा है।

यहाँ पर उसके वह एक लकड़ी की टेबल पर रखा हुआ है और आसपास काफी सारा सामान रखा हुआ देख सकते है।

इस तस्वीर में हमें एक --

काफी उसकी एक दीवार पर हम काफी सारे बच्चो की अलग-अलग--

कुछ छिले नहीं है और आस - पास हम काफी सारी मिटटी भी देख सकते है।

नदी के इस तट पर हम काफी सारी --